जहां पर छठी माई का पूजा हो रहा है।

नीचे छोटा छोटा घास लगाया हुआ है।

एक जगह पे पूरे ईटा का ढेर बनाया हुआ है।

यहां पर मंदिर का दृश्य दिख रहा है मंदिर का कलर ऑरेंज किया हुआ है।

एक आदमी है जो रेड कलर का टी शर्ट पहना हुआ है।

सामने वो मिरर में देख रहा है।

रंगबिरंगे डिजाइन है अलग अलग।

बिरयानी रखा हुआ है बड़ा सा थाल--

एक बड़ा सा पोस्टर लगाया हुआ है।

यहां पर हॉस्पिटल का दृश्य दिख रहा--

तौलिया ब्लू कलर का है।

नीचे छोटे छोटे घास लगाएं हुए हैं।

यहां पर दुकान का दृश्य दिख रा--

प्रिंट आउट करने का मशीन रखा हुआ है।

सामने और भी पोस्टर लगाया हुआ--

और पेड़ के बीच से सूरज भगवान का रौशनी आ रहा है।

बगल में एक्स_रे रूम है ऊपर पोस्टर चिपकाए हुआ है।

टेबल रखा हुआ है टेबल पे एक आदमी बैठा हुआ है।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

रेक में कुछ डब्बा रखा हुआ है कुछ पाइप रखा हुआ है कुछ पेंट करने का सामान है।

यहां पर बड़ा सा दुकान का दृश्य दिख रहा है।

और ऊपर रेड कलर से पेंट किया हुआ है।

दुकान में एक बड़ा सा बेड़ लगाया हुआ है।

सोफा ब्ल्यू कलर का है पर्पल कलर का है।

यहां पर बड़ा सा दुकान का दृश्य देख रहा है।

कुछ जींस रखा हुआ है टॉप रखा हुआ है साड़ी रखा हुआ है और शर्ट पैंट रखा हुआ है।

हाता बनाया हुआ है पेड़ पौधे लगाए हुए हैं।

शटर लगाया हुआ है दुकान में।

काउंटर के बगल में एक कुर्सी रखा हुआ है।

बेंच रेड कलर और ब्लू कलर से--